यहां पर बहुत ही सारे सुन्दर सुन्दर पेड़ उगे हुए हैं।

यहां पर हम एक रास्ते को देख सकते हैं।

यहां पर हमें बहुत सारे बच्चे भी दिख रहे हैं।

एक वृक्ष सुंदर लग रहा है।

यहां पर एक बाउंड्री हमें दिखाई दे रहा है एक वृक्ष का तना और उसके पत्ते दिखाई दे रहे हैं।

एक ठेले पर एक औरत कुछ सामान बेचते हुए दिखाई दे रही है।

यहां पर बहुत सारे डिस्को लाइट लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर हम एक बहोत ही सुंदर खूबसूरत बोर्ड जिस पे राठौर कुल्फी लिखा हुआ दिखाई देता है।

दीवार पर बहुत ही सुंदर टाइल्स का प्रयोग किया गया है हमें यहां पे स्विच बोर्ड दिखाई दे रहा है।

दीवार पर तीन एयर कंडीशनर दिख रहे हैं।

यहां पर कुछ बिजलियों के तार लगे हुए हैं।

यहां पर एक बड़ा सा बोर्ड जिसमें कोका कोला लिखा हुआ है।

यह रेलवे स्टेशन का दृश्य है यहां पर एक बड़े से बोर्ड में प्रवेश निषेध लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह एक बड़ी सी इमारत का दृश्य दिखाई दे रहा है यहां पे हमें बहोत सारे एयर कंडीशन लगे हुए दिख रहे हैं।

यह एक रूम का दृश्य है।

यहां पर हम एक स्प्राइट की पानी का बोतल देख सकते हैं।